और एक कुर्सी रखी हुई है जिस पर जेनिफर लिखा हुआ है और सामने दो हरे कलर के परदे लगे हुए हैं और नीचे मैट बिछी हुई है।

और नीचे जमीन पर भी पत्थर लगा हुआ है और यहां कुर्सी पड़ी हुई है और सामने काउंटर रखा हुआ है यहां आदमी बैठे हुए हैं।

कुछ खड़े हुए हैं और एक औरत झाड़ू लगाते हुई नजर आ रही है और यहां उनके सामने कुछ सामान रखा हुआ है।